यहाँ पे बहोत सारे बच्चे नाचते हुए प्रतीत हो रहे है जो की कुछ किनारे में बहोत लड़के है और कुछ किनारे में बहोत सी लड़किया है और उसके बीच में उनका टीचर देख रहा है जैसे सेल्फी लेते हुए और ऊपर में कुछ लगा हुआ दिखाई दे रहा--

यह एक नाई के दुकान दिखाई दे रही है जो की एक इंसान एक व्यक्ति की ब दाढ़ी सबको बना रहे है।

यह एक आलू है जो की बहोत सी संख्या में एकत्रित है और उस आलू के कुछ छिलके-छिलके निकले हुए है और यह आलू गन्दा दिखाई दे रहा है और उस आलू के--

यह एक शोरूम हे जोकी उसके आगे में बहोत सारे मोटर साइकिल दिखाई दे रहे है और उसके ऊपर में हीरो लिखाया हुआ है उसके किनारे में बहोत से बड़े पेड़ दिख रहे है और ऊपर में तार सब बिजली के --

यहाँ पे दो लड़किया सेल्फी लेते हुए नजर आ रही हे जिसमे एक लड़की मोबाइल को अपने हाथो में पड़के हुए हे और एक लड़की उसके पीछे मुस्कुरा रही हे उसके पीछे में एक पाइप वाला हे जो चढ़ा हुआ हैं।

जहाँ पे एक कमरा हैं जो की पलंग सब हैं उसके पीछे लाइट सब भी हैं और वायरिंग भी की गई हैं और एक पेंटिंग भी हैं उसके पीछे में और उस रूम पर्दा सब भी लगाया गया हैं और सोफा सेट भी हैं।

यह एक बुक की दिकान है जो कि एक व्यक्ति एक कुर्सी पे बैठा हुआ है और टोपी को लगाया हुआ है और हाथ में मोबाइल को पकड़ा हुआ दिखाई दे रहा है इसके नीचे में एक कैलकुलेटर का मशीन भी और एक कागज को पकड़े हुए दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैदान है जो कि बहुत बड़ा घास सब दिखाई दे रहे और आम के कुछ छोटे-छोटे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं ऊपर बादल में सब मटमैला दिखाई दे रहे है उसके किनारे में कुछ घर जैसा कुछ दिख रहा है।